इसमें कुछ इलेक्ट्रिक पोल्स भी नजर आ रही है।

और इसमें कुछ टुबलाइट्स भी दिख रही है।

जिसमें एक सीटिंग एरिया है।

इसमें दो व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं।

आगे एक गाड़ी भी दिख पा रही है।

यह पिक्चर एक डांस अकेडमी के पोस्टर की है।

यह पोस्टर ब्लैक कलर का है।

और इसके ऊपर डी_आई_आर मस्जिद इसान लिखा हुआ है।

इसमें वेंडिंग एरोबिक डांसिंग ड्राइविंग म्यूजिक --

यह सभी चीजें सिखाई जाती है।

ये पिक्चर एक नदी के बीच ली गई हैं।

जिस पे काफी सारे लोग दिखे जा रहे हैं --

पीछे की साइड एक किनारा भी नजर आ रहा है।

इस पिक्चर में दो-तीन घर--

इसमे कुछ बायर्स भी दिख रही है।

जिसमें चार लड़कियां डांस सीख रही है।

नीचे की साइड वाइट कलर की टॉइस है।

इसमे कुछ व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं।

ऊपर की साइड एक काफी शानदार झूमर भी है।

बाहर की साइड कुछ वाहन भी दिख रहे हैं।

एलिवेटर के पास दो ग्रीन ग्रास कारपेट जैसी पोछी लगी हुई है।

इसकी दीवार अस्काई ब्लू कलर की है।

जिसमे कॉफ़ी अच्छी डेकोरेशन की गई है।

इसमें काफी सारे एक्सरसाइजिंग टूल्स दिख रहे हैं।

और इसमें कुछ व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं।

नीचे की साइड घास भी उगी हुई है।

यह पिक्चर एक एसबीआई के एटीएम की है।

इसमें काफी सारी गाड़ियां दिख रही हैं।

और आगे कुछ पेड़-पौधे भी दिख रहे हैं।

और इसमें से एक रास्ता निकला हुआ है।

इसमें काफी सारे पेड़-पौधे भी नजर आ रहे हैं।

जहां पर काफी सारे खाने-पीने के सामान मिल रहे हैं।

ये पिक्चर एक मोटर बाइक रिपेयरिंग सेंटर की है।

और पीछे इसके काफी सारे पूजे दिख रहे हैं।

यह पिक्चर में एक सीमेंट की मशीन दिख रही है।

ऊपर का मौसम काफी सुहाना है।

पीछे की साइड काफी सारे पेग भी नजर आ रहे हैं।

और नीचे घास उगी हुई है।

और इसमें कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं।

यह पिक्चर एक सैलून की है।

और ऊपर मौसम काफी सुहाना भी है।

जिसमें कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं इसमें कुछ दर्शक भी दिख रहे हैं।

और पीछे काफी सारे पैर भी दिख रहे हैं।

यह पिक्चर एक दूसरी स्टोर की है जिसमें काफी सारे मेकअप के सामान और कुछ बिस्किट भी मिल रहे हैं।

इसमें एक व्यक्ति भी दिख रहा है।

यह पिक्चर एक छत के टेरिस्ट गार्डन की है।

जिसके नीचे ग्रीन ग्रास कार्पेट बिजी हुई है इसमें काफी सारे गमले भी दिख रहे हैं।

ऊपर का मौसम काफी सुहाना है।

और ये छत ग्रील से घिरा हुआ भी है।

इस पिक्चर में एक ऑटो रिक्षा दिख रहा है जिसमें कुछ लोग नजर आ रहे हैं।

उसके ऊपर काफी थाड़ी डिजाइन भी बनी हुई है इसमें एक इलेक्ट्रिक पोल भी दिख रहा है।

जिसमें काफी सारी सब्जियां दिख रही है आगे की साइड कुछ फल भी नजर आ रहे हैं और इसमें एक व्यक्ति भी दिख रहा है।

ये पिक्चर एक घर की है जिसका कलर वाइट है।

पीछे एक बड़ा सा पिलर भी दिख रहा है जो काफी चमकदार है।

और एक छोटा सा चांद भी दिख रहा है।

ये पिक्चर एक सब्जियों की मार्केट का है।

जिसमें काफी सारी सब्जियां बिक रही है।

इसमें एक कैमरा भी दिख रहा है।

और इसमें कुछ व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं।

इसमें एक व्यक्ति अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा है।

इसके दिवाल का कलर वुडेन और वाइट है।

इसमें एक ए_सी भी लगा हुआ है।

नीचे की साइड वाइट कलर की टाइल्स भी है।

ये पिक्चर एक मसलियों के मार्केट का है।

जिसमें काफी सारी मछलियां दिख रही हैं।

यह पिक्चर एक स्कूल के बिल्डिंग भी है जिसका कलर वाइट है।

उसके पीछे कुछ और घर भी दिख रहे हैं।

इसमें दो व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं।

और इसमें काफी सारे पेर भी नजर आ रहे हैं।

यह पिक्चर एक जनरल स्टोर की है।

इसमें काफी सारे ग्लूसरी और किराने के सामान बिक रहे हैं।

जिसमें ब्लू और वाइट कलर के पर्दे से डेकोरेशन की गई है।

इसमें ग्रीन कलर की मरकरी लगी हुई है।

और इसमें काफी सारे पेड़-पौधे दिख रहे हैं।

इसमें कुछ टेबल्स और चेयर्स भी लगे हुए हैं।

और ऊपर काफी सारी लाइट जल रही हैं।

जिसमें काफी सारे पेड़-पौधे नजर आ रहे हैं।

और इसमें से एक रास्ता भी निकला हुआ है जिस पे टॉइस लगी हुई है।